इसमें कुछ फोटोस दिखाई दे रहे हैं जो गमले के हैं जो काले कलर के हैं।

और बहुत सारे छोटे छोटे घास दिख रहे हैं जो हरे कलर के है।

और कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और काले कलर की है।

इसमें एक काच का दरवाजा लगा हुआ है।

इसमें बहुत सारे बच्चे लोग दिखाई दे रहे है जो कुछ कर रहे है।

इसमें सफेद कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और एक कपड़ा दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है।

यहां मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है जो बहुत बड़ा है जो सफेद कलर का है और मिट्टी कलर का है.

और कुछ लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं जो सफेद कलर की हैं।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

अ बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं।

यहां मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ पत्थर लगे हुए हैं जो ग्रे कलर के हैं और मिट्टी कलर के हैं.

और एक लाइट दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

और एक आसमान दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और सफेद कलर का है।

में कुछ राउंड शेप में चेयरें दिखाई दे रही है जो काले कलर की है और गोल्डन कलर की है।

पर दो पोल दिखाई दे रहे हैं जो ग्रे कलर के हैं।

और कुछ सफेद कलर से लिखा हुआ है।

और कुछ फ्रॉके दिखाई दे रही है।

और एक आधा बेड दिखाई दे रहा है जिसमें चादर बिछाया हुआ है जो लाल कलर का है और ऑरेंज कलर का है।

और एक कांच का टेबल दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे कांच लगे हुए हैं।

यहां मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है जिसमें एक लकीर दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

और एक बड़ासा पूल दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है।

और बहोत सारे कुर्सियां दिखाई दे रही है जो राउंड शेप में है जो हल्के क्रीम कलर की है।